और गुलाबी रग की लाईट भी जल रही है इस इ स्टेज मे खुर्ची भी रखी हुई दिखाई दे रही जो कि लाल रग की है।

और इस पर कुछ लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है इस बिल्डिंग मे काच लगा हुआ नजर आ रहा है बाहर की तरफ एक छज्जा निकला है और कुछ खाली जगह भी पडी है।

यह किसी जगह पर बीचो बीच एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके उपर चार छोटे छोटे गुम्बज बने हुए है इन चारो गुम्बज के बिच में एक बड़ा सा गुम्बज बना हुवा दिखाई दे रहा है बिल्डिंग बोहोत बड़ी बनी हुई है और बोहोत पुराने पत्थरो से जोड़कर बनाई गई है।

बिल्डिंग कि छत पर दो छोटे-छोटे कमरे दिखाई दे रही है जिसके उपर दो गुंबज बने है।

बाउंड्री वाल मे लोहे की रेलिंग भी लगी हुई है और एक लोहे का गेट भी लगा हुआ है अंदर एक बड़ा सा आम का पेड़ भी दिख रहा है।

हरे रंग का गेट लगा हुआ है और एक बड़ा गेट है और एक छोटा गेट है रास्ते पर एक स्कूटी जाती हुई दिख रही है और एक औरत भी पैदल जा रही है।

एक काफी बड़ासा लॉन नज़र आ रहा है जिसमें कई सारे सफ़ेद रंग के खुर्सी रखी हुई दिखाई दे रही है जिसके ऊपर सफ़ेद रंग का कवर भी चढा हुआ है।

यहा पर एक नदी और तालाब नज़र आ रहा है जिसके दूसरे तरफ काफी सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहेकाफी हरयाली नज़र आ रही है।

और एक ऑफिस दिखाई दे रहा है जो कि किसी तरह का विद्युत ऑफिस है इसके बाहर म अ काले रंग का बोर्ड लगा हुआ है।